चट्टानें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

पेट्र्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिये जाते हैं।

यहाँ पर लोग अपने भगवान की पूजा करने जाते हैं।

दुकान के बाहर भी कुछ कपड़े टंगे हुए हैं।

खिड़कियाँ भी नजर आ रही हैं। आस पास इमारत के बहुत सारी हरियाली है और पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर कोई पदार्थ बनाया जाता है।

एक घर जो शुरुआत में बना हुआ है। उस पर प्लास्टर हुआ है सिर्फ।